यह फल का दुकान बहुत बड़ा है ।

यह किताब कॉपी का दुकान बहुत ही अच्छा है।

यहाँ पर दूर-दूर से लोग किताब-कॉपी खरीदने आते है।